यहाँ पर एक ऑटो है और यहाँ पर एक बड़ी बस में भी --

ताकि लोगो को अपनी समय देखने में परेशानी न हो और इसमें --

यहां पर बहोत बड़े-बड़े इमारत भी है और यह इमारत देखने बहुत ही --

यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के सामने --

का पोस्टर लगाया गया है और इस मॉल को बहुत ही सुन्दर तरीके से --